मुझे एक शटर दिखाई दे रही है जो की बंद है एक इलेक्ट्रिकल पोल भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे वायर भी नज़र आ रहे हैं।

जोकि एक अलमारी में रखे हुए हैं

पीछे कुछ सूखे झाड नजर आ रहे हैं और मिट्टी नजर आ रही है।

दो युवक ने व्हाइट कपड़े पहने हुए है एक युवक ने ब्लैक बैग रखा हुआ है अपने पास और पीछे कुछ इलेक्ट्रिकल पोल दिखाई दे रहें है बिल्डिंग के ऊपर येलो टंकी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे मुझको पत्थरों से बनी दीवारे दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ मैदान भी दिख रहा हैं जिस पे हरी हरी घास उगि हुई हैं।

इस तस्वीर मे मुझको कारे दिखाई दे रही हैं स्कूटर दिखाई दे रहे है एक युवक जा रहा है।

--सड़क दिखाई दे रही है पीछे की तरफ फल फ्रूट की दुकान भि दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सब्जियों की दुकान है यहाँ पर मुझको खीरा दिखाई दे रहा है गाजर दिखाई दे रही है।

जिसने येल्लो कुर्ता पेना हुआ है ब्लाक दुपट्टा डाला हुआ है और ग्रीन लेगी पेनी हुई है पीले कैरट दिखाई दे रहे है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक इ-रिक्शा है इसके पीछे मुझको एक गेट दिखाई दे रहा है।